यह एक घर का फोटो है जहां पर घर का रंग लाल रंग का है।

साइड में सभी कुछ हरा भरा रंग का दिख रहा है।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

यह एक दुकान का फोटो है जिसमें एक लरका खड़ा है।

यह एक बाहर का फोटो लिया गया है जो कि नीचे के एंगल से फोटो लिया गया है।

यह एक दुकान का फोटो है जहां पर बहुत सारे बैक कवर रखा गया है वहां पर एक--

यहां एक इंडोर फोटो लिया गया है जहां पर एक लड़का और एक लड़की खड़ी है।

यहां पर आंध्रा बैंक ए_टी_एम है एक्सिस बैंक का भी ए_टी_एम है।